और एक आदमी है जो खड़े हो के ब्लू व्हीलर पे है वो गाड़ी के ऊपर में बहुत सारे चित्र चिपका रहा है।

ये एक रेस्ट्रॉंन्ट है जहाँं पर बहुत सारे एक टविन टॉवर बना हुआ है बहुत सारे एक स्टेचूस के फोटो लगे हुए हैं।

ये एक मॉल है जहाँं पे जेन्टस के कपड़े हैं और ये मॉल को बहुत अच्छे से सजाया गया है बहुत सारे पिल्लरस हैं।

बलून लगा हुआ है व्हाइट है पिकं ग्रीन बलूनस है और उसमें रिबन लटकाया गया है बहुत सारे--

ये एक जिम है जहाँं पे बोहोत सारे जिम का ब्लैक येलो में हैं बहुत सारे टायर्स रखे हुए हैं बहुत सारी जिम जिम जिम में जो मशीन का यूज़ किया जाता है वो सारी मशींस है।

ये एक बहुत बड़ा-सा बीच है जहाँं पे बहुत सारे नाव है और नदी के किनारे बहुत छोटे-छोटे घर बने हुए हैं वहाँं पे नदी के किनारे जो बहुत सारे लोग जो खड़े हैं।

ये एक इस्त्री करने की दुकान है जहाँं पे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से कपड़े को इस्त्री किया जा रहा है एक आदमी मॉक्स लगा के इस्त्री अपने कपड़े को इस्त्री कर रहा है।

और ऑरेंज कलर का बलून है बलून में रिबन लटका हुआ है और एक टेबल है जिस पर ब्लू कलर की चादर बिछी हुई--

और यहाँं एक आदमी खड़े होकर सामान ले रहा हैं यों सारा सामान हैं कुछ सामान चेयर पर रखा गया है और वो चाह कर सब सामान बेच रहा है।

यो स्कूल हैं छोटों बच्चों का नर्सरी की क्लासस से बहुत सारी लड़कियाँं बेंच पर बैठी हुई हैं।

स्कूल है जहाँं पे बहुत सारे लड़के या लड़कियाँं मिल कर मिट्टी में खढ्ढे खोद मिट्टी में खढ्ढे खोद के उसमें पे-पेड़-पौधें लगा रहे हैं।

और छोटे-छोटे बॉक्स में बहुत सारी की तरह-तरह की दवाई रखी गई हैं और बॉक्स के ऊपर जो है बाक्स है उसके ऊपर बहुत सारी फाइलस रखी हुई हैं।

और दोनो लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्रिकेटर का और एक पे अब्दुल कलाम जी का फोटो लगा हुआ है।

लाइट लगे हुए हैं बहुत तो और उसके अंदर दो बोतल रखा हैं एक माज़ा का पेट्री का है एक कुर्सी है।

ये एक प्रॉडक्शन फैक्टरी है जहाँं पे बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं।

और उस साइड में भी बहुत सारे बेंचस लगे हुए हैं आदमी लोग बैठे हुए हैं अपना फोन चला रहे हैं।

ये मंदिर -वंदिल जैसा हैं जहाँं पे बीच पे एक बड़ा-सा नाला है।

तरह टाइजरस हैं चिप्स कुरकुरे मैगी पैकट्स रखे हुए हैं।

ये एक कॉफी शॉप है जहाँं पे चाय शॉप है जहाँं पे चाय ऐप लिखा हुआ है एक पोस्टर लगा हुआ है फाइव स्टार बॉयज होटल एण्ड आई --

लिखा हुआ है एम इम्पेक्ट कॉलेज जिस पे एक चेप्टर बोर्ड है जिस पे है बहुत सारा कुछ बताया गया है बच्चों को--

और एक दो-तीन बोर्ड लगे हुए हैं आनन्द टीचिंग सेन्टर मोबाइल मैथ फिजिक्स --

बहुत से कांटेक्स नंबर दिए गए फॉर वेडिंग एण्ड इवेंट मैनजमेंट ऑफिस --

घर के रेड में ब्लू में खेलने वाले हैं और लाइट्स -वाइट्स लगी हुई है।

माँं वरूणा आरती में आपका हार्दिक स्वागत किया गया है।